सामने दो गाड़ी है जिसका कलर एक का ब्लू और एक का ब्लैक है।

और यहां सामने दो चार आदमी भी दिख रहे हैं जिसका शर्ट का कलर ब्लू है।

सामने बहुत सारे किताब कॉपी रखे हुए हैं और बगल में बहुत सारी गुड़िया है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका कलर पूरा हरा भरा है।

यह एक राशन का दुकान है सामने बहुत सारी बोरियां रखी--

इस फोटो में सामने सूर्य दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक लड़का लेटा हुआ है।

ये एक ए_टी_एम का बाहर का दृश्य है यहां सामने बहुत सारा बाइक्स और एक स्कूटी खड़ी है।

पीछे एक सीप का मूर्ति है और सामने दो कुर्सियां रखी हुई है ।

जहां बहोत सारी औरतें बैठी हुई है और एक आदमी भी खड़ा है।

यह एक फल का दुकान है जिसका पीछे का कलर ब्लू है और सामने बहुत सारे फल रखे हुए हैं।

और यहां संतरा रखा हुआ है संतरा का कलर ऑरेंज है और यहां केले रखे हुए हैं केले का कलर पीला है।

और ऊपर में क्रीम कलर से कुछ लिखा हुआ है और सामने एक पेड़ भी है।

यह एक रोड साइड का फोटो है।

और यहां एक टेंपो भी दिख रहा है जिसका कलर ग्रीन है।

जो कि वहां बहुत सारा बाइक लगा हुआ है सामने एक आदमी है जो कि हेलमेट लगाकर बैठा है।

और सामने दो चार लाइट भी लगी हुई है जो की पीले कलर का है और दीवाल का कलर ब्लैक है।

और सामने दो सीसे भी लगे हुए हैं ।

और सामने एक लड़का मास्क लगाया हुआ है।